इसे इस फोटो में एक सलून बना हुआ है।

और एक चेयर बाहर रखी होये चेयर के पास में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

और घर दिखाई दे रहे हैं। घरो के पास में पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक पुतला खड़ा हुआ है जो की इसे कपडे पहना रखे हैं।

यह एक फोटो है जिसमें एक घर बना हुआ है।

इस फोटो में एक दुकान है और दुकान के अंदर बहुत सारे कपड़े रखे हुए है।

और जिम सेंटर को बहुत अच्छे से सजाया गया है।

जिसमें बहुत सारे आदमी आए हुए हैं और यहां पर झूले भी लगे हुए हैं।

और खिड़कियों के पास में कुर्सी रखी है और एक ड्रम रखा हुआ है।

इस फोटो के अंदर एक रूम बना हुआ है रूम के अंदर एक मशीन रखीं हुई है।

और उस उनके पास में ही बहुत सारे बच्चे चेयर पर बैठे हुए हैं।